इस मेले में बहुत सारे लोग भी उपस्थित है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल का दृश्य है जहां पर जिम किया जाता है।

रोड का दृश्य है इस रोड के किनारे एक बहुत बड़ा हरा पेड़ है।

यह एक रूम का दृश्य है इस रूम के नीचे टाइल्स बिछाया हुआ है।

और इस रूम मे चेयर है टेबल है और एक आदमी है जो की खड़े हुए हैं।

तीनों बच्चे बहुत ही अच्छे तरह से नृत्य कर रहे हैं।

और यहां पर बहुत सारा पेड़ पौधा है और पहाड़ भी है पत्थर भी है पानी भी है।

अलमारी के बगल में कपड़े भी उपलब्ध है।

और वाइट कलर की बहुत सारा पर्दे हैं और इस दृश्य में एक--

बाजार में बहुत भीड़ है बहुत सारी गाड़ियां है साइकिल है।

यह एक रूम का दृश्य है इस रूम में एक सोफा है जोकि ब्राउन कलर का है।

और इस रूम में एक काउंटर है काउंटर पे एक आदमी खड़ा हुआ है।

और उसी के बगल में एक वाइट पेंट कलर के दीवार खड़ी है।

यह एक बहुत बड़ा रूम का दृश्य है।

यह एक बहुत बड़ा हॉल का दृश्य है इस हॉल में एक बहुत बड़ा स्टेज भी बनाया हुआ है।